ये देखिये जो मंदिर है आप देख सकते है ये मंदिर में देखो जहाँ पे ये--

यहाँ पे फूल वैगरह कई सारे लोग बैठे है यहाँ आप देख रहे है काफी अच्छा नजारा है इसे और आप देख सकते है की--

ये देखिये जो हमको नज़ारा दिख रहा है ये देखो--

यहाँ पे आप देख सकते है ये जो सड़क दिख नज़र आ रही हैहमे--

अ स सड़क के आइड-साइड आप देख सकते है काफी घने बड़े लम्बे-लम्बे पेड़ लगे हुए है और सामने ये काफी ऊँची पहाड़ नज़र आ रही है।

ग्रेप्स है एप्पल है ऑरेंज है काफी सारे फ्रूट्स वगैरह है जोकि यहाँ पे हैं।

और ये देख सकते है ब्लैक कलर की कार जो की काफी शानदार लग रही है इसकी रेड कलर की लाइटिंग है लाइटिंग देख सकते है आप--

ये देखिये ये बरसात के सीजन का नज़ारा --